बहुत सारे इंसान बैठते हैं यहां--

जो एक पार्क है इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

एन_डी लिखा हुआ है यहां पे ये पारक सा है यहां पे राजकीय स्तरीय--

यहां पे डस्टबिन रखी हुई है नर्स ने सफेद कोर्ट पहन रखा है।

यहां पे बहोत सारी गाड़ियां हैं गाडियां सारी सफेद रंग की है।

आप देख सके हो यहां पे बहोत सारे पेडे ही पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पे बहुत सारे ऑटो खड़ी है गाड़ी खड़ी है।

चप्पल जूतियां भी रखी हुई हैं देखने में बहुत अच्छी लग रही है आप देख स्क बहुत अच्छी चप्पल जूती हैं।

जो एक पार्क है इस पार्क में बहुत सारे --